एक गाये भी दिख दे रही है जिसका कलर ब्लैक ऑर व्हाइट है ओर नीचे जमीन भी दिखाई दे रही ओर एक रस्सी भी दिखाई दे रही है जिसका कलर ग्रीन --

यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई दिखाई दे है भिंडी भी दिखाई दे रही है यहां पे गिल्टी भी दिखाई दे रही है सरकंद भी दिखाई दे रहा हैं बैगन भी दिखाई दे रहा है मिर्चिया भी दिखाई दे रही है यहाँ पे--

यहां पर कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं और दीवार भी दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट नीचे टाइल्स बिछी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे एक ड्रोव भी दिखाई दे रही है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारी बुके रखी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे पेन भी दिखाई दे रहा है और कुछ लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही है।